और इसका एक ब्लू कलर का भी साइड पे रखा हुआ है।

शायद ये जेम कॉलेज लग रहा है अंदर का पता नहीं चल रहा नाम सही से नहीं दिख रहा है कुछ तो कॉलेज --

ये एक स्विमिंग पूल एरिया है और ब्लू कलर का पानी है अंदर एक डिजाइन करके चेयर भी हैं।

कोई आदमी लोग तो नहीं दिख रहे हैं साइड में बिल्डिंग दिख रहा हैं और स्विमिंग पूल का खाली पानी हैं पानी ही दिख रहा हैं।

ये एक वेजिटेबुल शॉप है यहां पे बहोत सारे औरत लोग वेजिटेबुल खरीद रहे हैं।

लग रहा है क कई सालों का मूर्ति ये बना हुआ है और रखा हुआ है वैसे ही लग रहे--

ग्रीन वाइट और ऑरेंज कलर में तिरंगा जो रहता है वैसा कलर किए हुए हैं। अंदर भी बहोत अच्छा होगा लग रहा है बाहर से तो बहोत सुंदर लग रहा है सारा।

और पहाड़ दो ठो ऊंचा है और ऊपर बादल जा रहे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं बादल बहुत अच्छा अच्छा पेड़ है।

ये एक तो चर्च है जहां क्रिस्टियन धर्मा वाला भी लोग और औरत लोग--

ये एक ठो रोड गया है जहां ऊपर से साइड से एक ब्रिज बना रहे हैं।

इसको बाउंड्री उठाएंगे लोहे से कभर रहे हैं बहोत सारा मेशीन भी है यहां पे साइड साइड सारा रखा हुआ है।

ये एक ठो शॉप है जहां लिखा है हीराकुद मोटर्स ।

और ऑफिस का नही ये है थोड़ा हॉस्पिटल है सॉरी सॉरी --

और एक ठू कोर्ट का बना हुआ है वाइट कलर में जैसे बैडमिंटन खेलते हैं वॉलीबॉल खेलते हैं यहां पे--